और एक बहुत बड़ा घर दिख रहा है। उसके आस पास बहुत से पेड़ पौधे देख रहे है ।यहाँ पर बहुत से खम्भे भी दिख रहे--

यहाँ एक बहोत ही सुंदर होटल हैं। जिस के आस पास बहुत हरियाली हैं।